यहां पर असूली किया जाता है। आय असूली किया जाता है कर के रूप में सबहो से क्योंकि कर देना हर किसी का फर्ज होता है गवर्नमेंट को क्योंकि गवर्नमेंट कर्ज कर से ही चलती है और कोई भी काम कर से ही होता है।

यह ब्रांच है और इसका शिलान्यास श्याम सिंह ने किया था। बहोत ही अच्छा है। हर किसी को यहां पर अपना एटीएम कार्ड और अपना अकाउंट यहीं से खुलवाना चाहिए।

इंटरनेशनल फोरम पर अपना कॉन्टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा है।